देखिये यहाँ पे एक छत है जोकी ढलाई का छत हैं पिल्लर का घर है यहाँ पे देखिये कट भी लगा हुआ है।

एच.पी. पेट्रोल टंकी है देखिये यहाँ पे कार कितना लगा हुआ है पेट्रोल भराने के लिए और डीजल भराने के --

डीजल टंकी है और यहाँ पे ट्रक विनोद विनोद डीजल भराने के लिए और कितना मोटरसाइकिल पेट्रोल --

देखिए भैया हम आपको यहां दिखाने चल रहे हैं इंडिया पोल पोलिया पोलिया पोलिया पोस्ट ।

देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रहा है अगर आप को लेना है तो आप जरूर --

दो घोड़ा है और यहां चूहा लगा हुआ हुआ है यहाँ पर।

देखिये भैया यहाँ पे सब बच्चे लोग किस तरह डायरी में मेंशन कर रहे हैं।